किले का कलर रंग बिरंगा है और खुला आकाश है और काफी सारी आकर्ति --

यहाँ पर दो मंदिर हैं मंदिर में दो मूर्ति रखी हुई है एक मूर्ति में हाथ में माला टंगी हुई है।